यहां पर एक बहोत बड़ी लाइब्रेरी है लाइब्रेरी के अंदर फर्नीचर बीड़ा हुआ है ऊपर ए_सी लगी हुई है एक बुक रखी हुई है और --

सामने एक पंखा भी है ट्यूबलाइट भी है और चढ़ने के लिए पीढ़ियां भी है और एक लोटा भी रखा हुआ है जिसको पानी पिया जाता है।

छोटी सी दुकान बनाई हुई है उसके अंदर फूल की टोकरियां भी पड़ी है और छोटी छोटी मूर्तियां भी रखी हुई है और भी --

फर्नीचर बेड के उसमे अलग अलग खांचे बना कर बॉक्स में रखे हुए--

एक बहुत बड़ा उम्म सीधी गली है गली के पास में।

एक बहोत बड़ी सारी बिल्डिंग दिख रही है जिसमें बहोत ही ऊंची बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के पास मे --

रखी है उसके नट और उसको भी के लिए काम आती है पास में एक एंगल भी पड़ी है।

एक मशीन पड़ी हुई है और उधर एक डंबल भी पड़े हुए हैं तीन लोग भी खड़े हुए हैं और पास में --

दुकान है दुकान के अंदर अलग अलग सामान रखे हुए है डिब्बे रखे गए है कार्टून के उसके अंदर अलग अलग सामान रखा हुआ है।

मैदान है मैदान के बीच में बेड़ियां लगी हुई हैं जो टाइलें लगी हुई है उसके पास में एक मकरानी भाटी --

बहुत बड़ी मूर्ति बना के बहुत बड़ा बिल्डिंग बना के उसमें सरस्वती माता की मूर्ति लगा रखी है और आगे भी उस बिल्डिंग के आगे भी कु --

और भी दरवाजा है जो फर्नीचर का बना हुआ है।

सामने एक बहोत बड़ी बिल्डिंग भी दिख रही है उस बिल्डिंग का वाइट कलर कर रखा है।

प्लेट रखी हुई है उस प्लेट के अंदर अंदर अलग अलग चावल रखे हुए हैं एक कटोरी के अंदर --

ये बहोत एक बड़ा पारक है पारक के अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उसके अंदर भी एक बहोत मतलब टीला बना के इसमें --

बनाई हुई है उस पट्टियों के पास पास--

और उसके दुकान के बाहर एक लेडिस की फोटो भी टंगी हुई है और उसके नीचे तीन चार बाइकें भी उगी है।

पांच चार फूट गड्ढा खोद भी दिया है और उसके पास में तीन चार लोग भी खड़े हैं।

और जो जमी है जो एकदम थोड़ी थोड़ी हरियाली के साथ मे--